एक सड़क पर एक इंसान साइकिल से जा रहा है यहाँ पर ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

पिक्चर में देख सकते हैं यह एक बिल्डिंग है यहां पर शटर बंद है पर लोग वहां फिर भी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं यहां पर यहां पर लेडिजो की संख्या ज्यादा और जेंट्स की संख्या कम नजर आ रही है।

इस पिक्चर में देख रहे है हमें सामने एक मंदिर नजर आ रहा है जो कि बन रहा है अभी आधा-अधूरा है।